ये रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म है।

सामने की तरफ एक एल_इ_डी मॉनिटर लगा हुआ है।

सामने की तरफ काउंटर है।

काउंटर के ऊपर एक क्यू_आर कोड रखा हुआ है।

इस फोटो में किसी फंक्शन का दृश्य दिखाया गया है।

फंक्शन में को लाइटों से सजाया गया है।

कुर्सियां भी पड़ी दिख रही हैं।

आकृति के सामने लोहे से बैरिकेटिंग की गई है।

बाइक से कुछ दूरी पर एक हेल्मेट रखा हुआ है।

पीछे की तरफ रंग बिरंगे फूलों से बनी माला भी रखी है।

इमारत में सामने की तरफ एक बैनर लगा हुआ है।

इमारत के सामने एक सड़क भी है।

इस स्ट्रक्चर के इस नीचे हिस्से में पानी भरा हुआ है।

बोर्ड पर वाधवा बेकर्स लिखा हुआ है।

इस फोटो में एक लड़का डांस करता हुआ दिख रहा है।

कैप के ऊपर बाय लिखा हुआ है।

कुछ गाड़ियां सड़क के दोनों तरफ खड़ी दिख रही है।

दुकान की छत पर पंखा भी लगा हुआ है।

इमारत के सामने एक पेट्रोल पंप भी है।

इस फोटो में किसी जिम का दृश्य दिखाया गया है।

जिम में लाइट भी लगी हुई है।

सामने की तरफ कस्टमर के बैठने के लिए कुर्सियां भी पड़ी हैं।

बांई तरफ एक रिसेप्शन काउंटर भी है।

इस फोटो में किसी दुकान का दृश्य दिखाया गया है।

इस फोटो में एक पेट्रोल पंप को दिखाया गया है।

इमारत से पुल रूपी एक दूसरी इमारत भी निकलती दिख रही है।

सामने की रैक में कुछ टेडी बीयर रखे हुए है।

इस फोटो में एक बेकरी की दुकान दिखाई गई है।

दुकान के अंदर लाइटे जल रही हैं।

कमरे के सामने कांच की एक विंडो भी है।

कुछ लोग फाउंटेन के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं।

बस अड्डे में बहुत सारी बसें खड़ी दिख रही हैं।

सामने की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ है।